यहाँ से हम दवाइयाँ खरीदना पसंद करते हैं। यह मेडिकल स्टोर काफी बड़ी है। यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं।

जो गाड़ियों को ठीक करते हैं और यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी मिलते हैं |

यह एक ओपन जिम है यहाँ पे लोग कसरत करने आते हैं यहाँ पे तरह-तरह की चींजे होती हैं जिससे लोग कसरत करते हैं।

और लोग जंगलो में घूमना पसंद करते है जंगलो में घूमना लोगों को अच्छा लगता हैं लोग पिकनिक मनाने जाते हैं।

यहाँ पे स्टेज भी बनाया गया है जिसमें बहुत सारे लाइट लगाये गए हैं कुर्सियाँ लगाई गई हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं।